बैठे हुए है यहां पर ये।

इसके पास एक केबिन भी बना हुआ है।

यहां पर खुला आसमांन भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ रेली सी निकल रही है।

पहार नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ पेड़ पौधे और कुछ मकान भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक साड़ी का डिजाइन है।

तीन तकिए पड़े हुए हैं आऊर सामने नीचे की ओर कुछ मैट भी बिछा हुआ--

कुछ बी_पी वगैरह चेक करने की है और कुछ ऊपर मशीन भी लगी --

इस के हाथ में वॉच भी नजर आ रही है।